सामने वाली स्कूटी खड़ी हुई है और यहाँ पर बिडोल का एक बहुत बड़ा शोरूम है इस शोरूम के बगल में--

ये एक मेडिकल स्टोर है इस मेडिकल स्टोर में दो आदमी खड़े हुए हैं एक आदमी जो मेडिकल स्टोर पे बैठे हुए लोगों को दवाई दे रहा है जोकी इंजेक्शन का --

लेकर जा रहा हैं और दे रहा हैं।

एक जिम है इस जिम में बहोत सारी मशीने लगी हुई है जोकि ऊपर वॉल है और एक नीचे वॉल भी जिम बना हुआ है सामने वाले कुर्सी रखी हुई है उसके ऊपर--

और यहां पर ए_सी भी चल रहा है और यह बहोत सुंदर है।

ये एक कैफे है इस कैफे में एक आदमी सामने काउंटर पर बैठा हुआ है एक हरे कलर की घास की दीवार लगी हुई इसमें लिखा है आई एम अंकल इन टू लव मी ।

और यहां पर हल्की सी लाइट लग रही जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही है और ये पीले कलर की घास दिखाई दे रही है पेड़ भी हरे हरे--

खंभा रखा हुआ है और गढ़ा हुआ है सामने वॉल एक पेड़ है।

फ्रूट की दुकान है यहां पर इंडियन फॉर्मर लिखा हुआ है और इंडियन फॉर्मर के नीचे हमारे यहां कई प्रकार के ताजा फल व सब्जी मिलती है और यहां पर--

अभी देरी है जिसका नाम कुबेर है कुबेर के ऊपर वॉलपेपर बना लगा इस पर कुबेर लिखा हुआ है।

सजा हुआ है सामने वाल कुछ आदमी लोग बैठे हुए हैं कुछ गा रहे हैं।

यहां पर कुछ बच्चे बर्डे मना रहे हैं और एक केक लेकर आए हैं जो कि चॉकलेट केक है उसमें ढेर सारे फूल पड़े रखे हैं मेज पर और गुब्बारों से सजे हैं गुब्बारे लाल पीले हरे--

काले रंग के दिख रहा है लेकिन इनके काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल कर रही है मोमबत्ती भी लगी हुई है।

ऊपर आसमान में बादल हैं आसमान बिल्कुल नीले कलर का दिखाई दे रहा है लड़के ने चप्पल पहन रखी है और जींस पहन रखी है।

देन प्वाइंट ऐट बी_ए बी_एस_सी बी कॉम अ सब तरीके के प्रश्न आंसर लिखे हुए हैं।

ये एक जिम है इस जिम में बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं सामने व लाइट जल रही है और एक दरवाजा है दरवाजे के पे सामने बोर्ड है नीले कलर का लगा हुआ है लाल कलर --

फूल बने हुए हैं चादर बिछी हुई है सामने वाले एक डस्टबिन रखा हुआ है जो कि हरे कलर का दिखाई दे रहा है।

एक फूलों की दुकान है यहाँ पर बहुत सारे फूल रखे हुए हैं पीछे वाले भी दीवार है जो कि नीले कलर की है ऊपर बल वाले बाहर बलब लगे हुए हैं लाइटें--

ये एक मैदान है इस मैदान के सामने गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है शंकर जी की मूर्ति है जो कि गोलाई के शेप में है।

और लाल कलर का टी शर्ट पहनी हुई सभी एक दूसरे पेड़ को दिखा रही है सामान ले रही है।

यहाँ पर बहुत सारे मिर्ची पड़े हुए हैं और एक व्यक्ति मिर्चों को उठा रहा है और अपने पैकेट में रख रहा है ताकि वो मिर्चे खरीदने के लिए आया है ये मिर्चे हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं हमने और--

यहाँ पर माता जी का विसर्जन किया जा रहा है एक ट्रक है जिसके ऊपर माता जी को सजाया गया है यहाँ पर भीड़ बहुत सारी है एक ट्रक के ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है ट्रैक्टर के ऊपर।

किराने की दुकान है किराने की दुकान में बहुत सारे मंजन रखे हुए हैं इसका नाम कोलगेट है ब्रश भी रखे हुए हैं सफेद कलर का गुबारा लगा हुआ है सामने काला सफेद का भी बोर्ड लगा गुब्बारा लगा हुआ है।

और इस बार इनका नाम फॉरेस्टा है और यहाँ पर कुछ लिक्विड्स रखे हुए हैं बोतल में जैसे कि सॉस टमाटो सॉस रखे हुए हैं यहाँ पर सीधी सी लाइन पे।

ऊपर सबसे ऊपर छत के साइड पर एक लकड़ियों की पट्टियां बनी हुई हैं फ्लावर भी लटके हुए हैं एक हरे कलर लाइट नीचे वॉल जल रही है नीचे फर्श पे भी एक चमकदार लाइट जल रही है।

घर के ऊपर से जल रही हैं यहां पर कुछ कोल्डड्रिंक्स रखी हुई है जो कि हमें बियर बार लग रही है बियर है।

हुई हैं यहां पर काउंट एक मेज रखी हुई है और यहां पर तीन कुर्सियां लगाई गई--

काले कलर का तवा है और जलेबियां जो है वह बहुत ही मीठी दिखाई दे रही है और जो प्लेट है उसके ऊपर ढेर सारी जलेबी रखी हैं जलेबी--

औरतों ने साड़ी पहन रखा एक औरत ने उसने सफेद साड़ी पहन रखी है और वह सब हाथ बांधे खड़ी हुई हैं और कुछ बै अह खड़ी हुई हैं।

ये एक पीडर की दुकान है यहां पर ह सेवंथ हेवन इसका नाम है जो कि ब्राउन कलर में लिखा हुआ है सेवन जो है वो पिंक कलर का लिखा हुआ है हेवन जो है सफेद कलर का लिखा हुआ है।

सेवन हेवेन और यहाँ पर लाइटें जल रही है जो कि हरी प्ले कलर की हैं।

आयुर्वेदिक क्लिनिक जो लिखा है वो हरे कलर से लिखा हुआ है और प्लस का साइन लगा है जो कि लाल कलर का दिखाई दे रहा है।

दुकान है इस दुकान का नाम है गौरव ग्लास एंड मोलियम वर्कर इसमें विजय भारतीय संबंध विकास लिखा हुआ है सामने वाले कुछ साइज चेक करने--

के लिए नंबर लिखे हैं पाँच नौ बारह पंद्रह बीस पच्चीस पचास और यहाँ पर लिखा हुआ है एलुमिनियम डोर विंडो स्टार्टिंग ऑफ सीक्वेंस एंड चॉक नियर और यहां पर एड्रेस लिखा है --